यह बिल्डिंग में अम पेंट किया गया है इस बिल्डिंग में बहुत से बच्चे अम औद्योगिक अम राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए आये है।

यह एक कंपाउंड है इस कंपाउंड को घेरा हुआ है यहाँ पर अ बच्चे को खेलने के लिए कई समान भी है ।

यह एक मैदान है यह मैदान काफी बड़ा है इस मैदान में छोटे-बड़े अनेक प्रकार के पेड़ भी है इस मैदान में लताएँ भी है।

इस सड़क पर छोटी छोटी अनेक सी गाड़ियाँ है यहाँ बाइक पर आदमी भी बैठे हुए हैं यहाँ एक औरत भी है यह सड़क काफ़ी आकर्शक है |